तस्वीर में हमें एक उद्यान वाला झुला दिखाई दे रहा है जो की एक इसका एक टुकड़ा पड़ा हुआ है वहां हमें एक इसे ही रख--

इस तस्वीर में हमें एक खली मैदान दिखाई दे रहा है जिस के किनारे साइट पे हमें थोडा सा पानी भी भरा हुआ दे-दिखाई दे रहा है ये पानी देख ने में तोह बरसात का लग रहा है।

उसके ठीक बगल में हमें एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसने सर पे कपड़ा बाँदा हुआ है और सफ़ेद रंग की शर्ट पहना हुआ है।

बर्फी बेसन के लड्डू मावे के लड्डू व आदि गुलाब जामुन भी देखने को मिलते है।

यह तस्वीर में हमे काफी सारे झींगे दिखाई दे रही है जो की एक पन्नी में भरे हुए ह इन को नाव नाव से में नदी में से पकड़ कर लाके बेचा जा--

इस तस्वीर में हमें एक बड़ा सा सब्जी का खेत दिखाई दे रहा है जहा पर फुल बांध गोबी उगी हुई है यहा पर हम काफी सारे --

इस तस्वीर में हमें एक नाम से भरा हुआ एक पत्थर दिखाई दे रहा है जो की सीधा खड़ा है देखने में पर हमें यहाँ पे एक--

उसको साहारा देने के लिए नीचे काफी सारे लकड़ी के डंडे लगाए गए है जमीन पर रेत गिटी इट का ढेर भी देखने को मिलता है पीछे साइड पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।